एक नीले और सफेद रंग की बड़ी बस --

एक औरत खड़ी हुई है और एक लड़का बस के अंदर--

दिखाई दे रही है जो कि कुछ पुल बनाने का--

डॉक्टर का कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर एक--

और एक बेड लगा हुआ है जिसके ऊपर लाल रंग की चादर बिछाई हुई--

इस चित्र में हमें एक पारक --

की दुकान दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर बोहोत सारी औरते और आदमी दिखाई दे रहें हैं।

खड़े दिखाइ दे रहे हैं और कुछ लोग सिडियों पर बैठे हैं।

जिसके ऊपर ब्यूटी सैलून एस एकेडमी --

इस चित्र में हमें तीन चार--

एक सफेद रंग की और एक काली रंग की बड़ी--